अनगिप ये बाइक लगा हुआ है। पीछे घड़ है। पेड़ है।

उद्घाटन है गेंदा फुल का डेकोरेशन है। बैलून है और यहाँ पे बैठे भी हैं बहुत ही लोग --

कुछ वर्क करने वाली कैनडीडेट भी बैठे हैं। डेस्कबोर्ड लगा हुआ है ये काफ --

थीम ब्लैक कलर का है। गेट के आगे आपका --

एक शोरुम है। शूज का शोरुम है। काफी तरह का शूज है लोफर शूज है।

बोहत ही अच्छा है। ये दुकान है। आपको मिल रहा है यहाँ पे काफी शो --

काफी सुन्दर दिख रहे हैं। छोटा जैसा मूर्ति बना हुआ है ये।

गेट है। बैंक के अंदर काफी भीड़ है और काफी ही बड़ा बैंक --